स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए_टी_एम है यहां तो एक औरत खड़ा हुआ है वो तो पेला रंग का सारी पहना हुआ है।

बैठने के लिए कुर्सिया टेबल भी है यहां तो थोड़ा सा स्विमिंग पूल भी दिखा रहा है ये छोटी सी--

पेड़ दिखा रही है दो पेड़ दिखा रही है उसका तो पत्ता थोड़ा छोटा-छोटा अ करके दिखा रही है और पीछे दो और आदमी दिखा रही है।

यहां तो एक बिल्डिंग का कनेक्शन हो रहा है ये तो सब कुछ सीलिंग की वर्क जा हो रहा है।

आदमी दिखा रही है वो तो लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है वहां तो ज्यादा वॉल पस्टर सब कुछ लगा हुआ है वो दीवार पे--

यहां एक बोर्ड भी हैं बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और--

कमल की पे पौधा है यहां तो कमल फुल भी खिला हुआ हैं।

कुछ लोग फोन पर बातें कर रही है एक आदमी वाइट शर्ट पहना हुआ आदमी फोन हाथ प लेके बात कर रही है वहां अ --